इस चित्र में हमें एक मच्छी बाजार दिखाया गया है।

योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसका नाम एच_डी_एफ_सी बैंक दिख रहा है।

य ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई दे रही है।